और कई सारी साड़ियां भी रखी हुई हैं।

शॉप में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक किप्स पंचक्रम नाम से--

यहां पर कई सारी लकड़ी की चीजें रखी हुई हैं।

यह एक पुराने जमाने की हवेली बनी है।

ये एक स्टूडियो की पिक्चर है।

दीवार पर कई सारे पिक्चर लगे हुए हैं।

आई_ई_एस कॉलेज नाम से बड़ी सी बिल्डिंग है।

आई_एस कॉलेज ऑफ इंस्टिट्यूट बना हुआ है।

लकड़ी के टेबल लगी हैं।

ये एक मारिया पब्लिक स्कूल की पिक्चर है।

कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

ढाबे में कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं और बाहर कुछ डोर वगैरह भी लगे हुए हैं।

झूलों के पास कुछ व्यक्ति झूला वगैरह झूल रहे हैं।

और कई सारी साड़ियां भी रखी हुई हैं।